इसके सामने एक बड़ा सा टीन का फार्म बना हुआ है।

ये चित्र है एक एक दुकान के अंदर की जहां पर चुन्नी की दुकान है एक आदमी फोटो ख खिचाता हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक ये चित्र है एक सलून के अंदर की जहाँ एक आदमी दूसारे आदमी के बाल काटते दिखाई दे रहा है और--

--और एक आदमी फोटो खिचाता दिखाई दे रहा--

ये चित्र है एक ह-म्म- पुस्तकालय के अंदर का जहाँ कई तरीके की पुस्तके रखी-- दो आदमी अपनी फोटो खीचाते हुए दिखाई दे रहे है।

एक आदमी रिसेप्शन पे खड़ा हुआ है और पंखा लगा है और लाइटें जलती दिखाई दे रही हैं और सोफे पर बैग पड़ा हुआ है।

ये चित्र है एक ए .टी.एम के बाहर की जहाँ कई भीड़ खड़ी हुई है और कई गाड़ियां खड़ी हुई है एक ऑटो खड़ा हुआ है और लोग आ रहे है जा रहे है।

ये चित्र एक स्टेशनरी का है जहां पर हिन्दू आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

ए_टी_एम का गेट खुला हुआ है बाहर कुछ कचरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये चित्र एक अस्पताल के अंदर का है जहाँ एक आदमी चाय पिता हुआ कप पकड़े दिखाई दे रहा है।